और सीधी एक बिल्डिंग भी है साइड में और कुछ घर भी हैं पेड़ भी हैं आसमान भी दिख रहा है।

और कुछ लोग भी दिख रहे है। और साइड साइड में कुछ पेड़ भी है।

साइड में भी दो लोग है जो की बैठे है और दो लोग मछलिया को देख रहे है। एक लड़का है जो की मार्क्स पहना है। साइड में एक टायर भी रखा हुआ है।

सामने में एक दूकान है दुकान के आगे कुछ फूल भी रखे हुएं हैं जो की पीले और ऑरेंज रंग के हैं और बगल में उसल रंग के भी हैं ।

थर्मोकोल लगाया हुआ है। और उसके उपर कुछ सजा के रखा हुआ है। फूल से --

उसके बगल में एक लाइट का खम्भा भी लगा हुआ है। एक नल है और नल पे एक आदमी हाथ भी धो रहा है। उसके--

और बगल में भी ए कुछ का दूकान है जिसपे केवल बिक्रेता ही दिख रहा है।

सामने में एक मस्जिद है जोकि हरे और उजले रंग के दिख रहे हैं ।

नीव में एक घाट है और जो की लाइट भी बहुत सारे लगी है और पेड़ भी बहुत सारे है।